यहाँ एक अंकल जी है जो की कुछ कर रहे है पेड़ो के साथ और एक आंटी भी खड़ी हुई है।